एक शादी का गार्डन दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी गाड़ियाँ लाइन बाय लाइन खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ बाहर की तरफ पेड़ भी लगे हुए हैं।

एक ग्रीन कार्पेट पर यहां--

यहां पर कैमरे से एक व्यक्ति रील सूट भी कर रहा--

यहा हमे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

यहां हमें एक प्राकृतिक दृश्य नजर आ रहा है जहां पर--

और एक साइकिल और एक टू व्हीलर बाइक यहाँ पर --

यहां पर हमें एक नदी दिखाई दे रही है और इस नदी के आसपास हमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिख--

पहेना हुआ है और यह मिरर के सामने अपना फोटो --

डी_जे लगे हुए हैं। इस पर लिखा है साई सरकार पार्टी म्यूजिक ।

कुछ लोग यहां पर कुछ बच्चे यहां पर--

इस इमेज में हमें लोहे के कुछ पंखे--

अच्छे पंखुड़ियां वाले ये पंखे हैं।

सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर एक चर्च दिख रहा है। इस चर्च के अन्दर पीछे की तरफ एक क्रॉस का सिंबल --